यहाँ हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता है। यात्री लोग बैठकर यहाँ पर अपं आराम से अपना समय बिता --